ये जो आप जो ग्राउन्ड देख रहे है ये छतीसगढ़ का राजनन्द गाँव का ग्राउन्ड है आप देख सकते है इस ग्राउन्ड मे काफी सीरीअस क्रिकेट मैच चल रहा है। ये जो --

जो की ये किराना स्टोर है इस किराने स्टोर मे देख सकते है हमे इस किराना स्टोर में काफी सारा सामान ये देखिए यहाँ पे अंडे वगैरा रखे हुए है नमकीन है चॉकलेट है।

इसके मुँह पर ये देखिए इसको मोहर लगा कर रखा हुआ ताकि ये किसी को ना मारे ये गाय की आँख देख सकते हैं जोकि काफी बड़ी है और ये जो गाय काफी सुन्दर काली गाय है।